इहां कछु लोग खड़ेलबा इहां बहुत सारे चिप्स बॉक्स के पैकेट लागल बा।

इहाँ अलग-अलग प्रकार के गाछ वृक्ष बानी | इहाँ बड़े-बड़े गाछी बानी |

इहाँ बड़े-बड़े गाछी बानी इहाँ --

कोनो ऑफिस बानी ईहां बहार बहुत सारी गाड़ी राखल बानी ईहां --

लाल कलर का पोस्टर लगीला इहां एक कूलर रखीला।

तस्वीर बानी ई इहाँ पत्थर की मूर्तिल बनिल बा ई मूर्ति बहोत सारे --

एक लड़की खडील बा एक आदमी खडील बा इहा पर बहुत लोग --

कछु सामान रखी बा एक तराजू रखिल बा इहाँ एक स्प्राइट की बोत्तल रखीला |

इहा एगो सड़क बानी इहा एगो बैग रखिला |

इ एगो बिल्डिंग बानी | इ बिल्डिंग पर ऊपर तीन गुम्बद बानी | इ गुम्बद लाल रंग के रहेलु |

वृछा बानी इहा एक गाछी बानी इहा एक अ अंदर --